यह एक स्कूल कोलेज है जिसके बास में बहोत बाहर सारी कुर्सियां लगी हुई है और उपर तुलीए तौलिये पिछे सुख रहे हैं।

और गेट बंद है इसका और इसके हरे कलर का पेंट किया हुआ है और इसके जालियो मे लोहे ही सलाखे भी बनी हुई है।

यह एक बड़ा गेट है इसके अंदर से साधन आने जाने की व्यवस्था है और इसके पास एक वृक्ष खड़ा है और इसके आगे --

यह एक स्विमिंग पूल है जिसके ऊपर स्विमिंग पूल की फिसलन पट्टी बनी हुई है और बहोत सी लड़कियां नहा रही है।

और बहुत से लड़के भी नहा रहे हैं और आसमान नीला हो रखा है और आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बहुत हरियाली छाई हुई है।

और नीचे कुर्सियां पड़ी है और लाइब्रेरी के अंदर किताब भी पड़ी है।

वह दस बजे खुलेगी और ऊपर एक दुकान है जो कि बंद है ऊपर दो मंजिले दुकानें है।

यह एक राजा सॉल्यूशन की दुकान है इसके बाहर एक स्कूटी खड़ी है और ऊपर आसमान नीला है ऊपर सितारे निकल रही है।

और ऊपर से आसमान सफेद दिखाई दे रहा है इधर एक टॉयलेट बाथरूम है और आगे एक चौकी बनी हुई है जिसकी दो पीढ़ी है।

और आसपास में सेल्स की दुकानें भी है और इसके गेट में कांच लगा हुआ है और यह दो मंजिली दुकान है।

यह एक पारक है जिसके ऊपर अंदर बहोत सारी हरी भरी दूब लगी हुई है और आसपास में बहोत सारे --

ही भरे वृक्ष भी है और ऊपर एक शेड बना हुआ है जिसके नीचे एक आदमी --

यह एक घर है जोकि बहुत पुराना है इसके आगे से एक सड़क जा रही है और आस पास में दो नीम खड़े और --

यह एक रेलवे स्टेशन है जिसके ऊपर ताल छापर नाम लिखा हुआ है और यहां पर बहुत सारी पटरिया भी दिखाई दे रही है और --

यहां मिस्त्री लगे हुए हैं बीच में बरती पड़ी है और आस पास में पिलर चक रहे हैं बीच में दीवार निकाल रहे हैं और आस पास में बहुत सारे घर हैं।

यह एक स्टेडियम है इसके बाहर बहुत सारी बाइक और स्कूटी खड़ी है और इसके अंदर बहुत सारे पेड़ भी हैं।

यह एक बिल्डिंग है इसके बाहर एक ए_सी लगी हुई है और इसके बाहर बहुत सारे वृक्ष है आधे वृक्ष काटे हुए हैं और एक --

खिड़की में कांच लगा हुआ है और इस बिल्डिंग को पीला रंग किया हुआ है और आस पास में बहुत से हरे वृक्ष है।

यहां पर बहोत सारी मछलियां मरी पड़ी है जिसके अंदर से सारा माल निकाला जा रहा है और चार पांच लोग मछलियों के अंदर से --

दो तीन आदमी खड़े हैं पीली शर्ट वाला आदमी इस वाइट शर्ट वाले की कंधे पे हाथ रखे खड़ा और एक लड़की --

यह एक पार्क है यह नर्सरी है जिसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि बहुत अच्छे व छायादार हैं।

यह एक मंच है जिसके अंदर बहुत सारे लोग चर्च में बैठे हैं यह चर्च का फोटो लगा हुआ है पीछे।